यहाँ एक सेब का पैड है ।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है यहां पे--

यहां पे बहुत सारे रोड्स --

यहां एक पार्किंग है यहां पे एक बच्चा--

अ गरीले भी लगी हुई है.

हैं और दीवाल पे बहोत बड़ी--

यहां पे एक घर है और घर के साथ में--

लगे हुए हैं और यहां से--

थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रहा है.

रखे गए हैं यहां पे येलो कलर --

आसमान भी रखे हुए हैं यहां पे--

हो रही है और यहां पे--

आज लाया गया है यहां पे बहुत सारे--

फुल गोभी अनानास--

पेड़ है और यहां पे बहोत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगाई गई है।

और बहुत सारे पौदे--

जिसका नाम मान सरोवर स्टेशनरी --